यह पिक्चर में एक पार्किंग लोड दिखाया गया है।

दर्शन करने हेतु जा रहे हैं और आ रहे हैं।

कोहरे बादल और काले बादल --

यह एक महान व्यक्ति थे।

ईमारत या फिर मूर्ति आप बोल सकते हैं।